उस पर गजरे टंगी हुई दिखाई दे रहा है बाजू मे कार दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है एक ध--

इसमे मुझे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है। नदी हम्म के किनारे पर पत्थर डले हुए है काले काले और हरी हरी घास भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है उस पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहा है सामने एक व्हाइट कलर बी बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और घाँस दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे मुझे एक नदी दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे पड़े दिखाई दे रहे हैं और पत्थर हम्म डले हुई दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर एक छोटासा पेड़ लगा हुआ हैं।

हरहरे पेड़ दिखाई दे रहे है और एक अम रेल्वेवाला फाटक दिखाई दे रहा है और एक ई टीन सी दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है एक व्हाइट व्हाइट पत्थर सा रखा हुआ है टेबल जैसा --

और एम बहुत सारे पत्थर रखे है यहाँ पे जमे हुए और उसपे एक शेर की मूर्ति दिखाई दे रही है जी जो की सीमेंट की बनी हुई है और वो नीचे छोटा सा--